चार कुर्सियां पड़ी हैं एक जल पड़ा है और एक --

और ऊपर स्क्रीन और कई सारी अलग अलग मशीन्स लगी हुई है यहां पे डॉक्टर अपने पेशेंट्स का इलाज करते होंगे साइड में एक--

इस ढाबा है जहां पर आगे काउंटर पर भटोरा रखा हुआ है और नीचे इसका कुछ समोसा जैसा लगा--

यहां पे एक गॉफर्स मार्केट नाम की बहुत बड़ी सुपर मार्केट बनी हुई है जो कि--

यहां पे जो बोर्ड है वो लाल रंग का है नीचे सफेद रंग से लिखा गया है और ऊपर गोल्डन रंग से लिखा गया है।

और एक झुमर लगा हुआ है ऊपर कई सारे भगवानों की फोटो है और नीचे कई इमारते एक आंटी नीचे बैठ कर पूजा कर रही--

हेनार अच्छी हैं नीचे भी कई फूल गिरे हुए हैं और इसे बहुत अच्छे तरीके से सजा रखा है।

जहां पे बहोत सारी लीचियां पड़ी है ये लीचियां देखने में बहुत स्वादिष्ट लग रही है नीचे एक नीले रंग की टोकरी पड़ी है।

यहां पर नीचे न्यूज़ पेपर रखा हुआ है।

शायद ये खेल रहे हैं या बाते कर रहे हैं। यहां पर दो और लोग या फिर बैग --

यहां पे अंदर एक इंसान पिंक शर्ट में खड़ा हुआ है और एक इंसान और पिंक शर्ट में शायद उसी का इंतजार कर रहा है।

यहां पर बहुत सारे पेड़ हैं और कुछ पेड़ों की पत्तियां झड़ने लगी है जैसे कि यहां पर--

इस मज मंदिर इस चर्च पर बहुत सारे गुब्बारे लगे हुए है।